जो क्रिश्चियन लोग अपनी मन्नत मानने के लिए चर्च आते हैं और यहां जीसस क्राइस्ट की पूजा भी करते हैं।

की है और इसमें सजावट चल रही है बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेज को सजाया गया है अलग-अलग फूलों से सजाया गया है।